और दूसरी जो डमी है अंदर शोरूम में उसमें कुर्ती लगी हुई है उस डमी पर--

इसमें मुझे एक नाश्ते की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें एक बड़े से बर्तन में छोले रखे गए हैं।

जिससे शायद चाट बनाई जा रही है और उसके ऊपर प्याज डला हुआ है साथ में।

यहां पर मुझे एक ट्रांस स्टूडियो दिखाई दे रहा है जो दिखने में बहोत बड़ा है।